लोहे का बड़ा सा शेड ढला हुआ है उसके नीचे पत्थरो से डिज़ाइन दिया गया है ऑरेंज अँड रेड के पत्थरो के ऊपर पेंट किया गया है एक डायनासोर बना--

के ऊपर अलग अलग पोट्रेटस लगे हुए है अ बड़ासा गेट बना हुआ है बाउंड्रीज बनी हुई है सीमेंट का काम किया गया है बहुत ही खूब सूरत लग रहा है।

जमीन के ऊपर बहुत हि है खूबसूरत टाइल्स लागए गए है बहुत सारी छत्रीया लगी हुई है छत्रिया नीचे छाया है अलग अलग रंग की छत्रीया रेड येल्लो और साइड में अलग-अलग--

बने हुए है अंदर जाने के लिए कुछ मेहराबे बनी हुए है लोहे की बाउंड्रीज बनी हुई है बहुत सारा सामान नज़र आ रहा--

बडे बडे पेड लगे हुए हैं आस-पास पूल बना हुआ है पूल मे बहुत सारे लोग है मस्ती कर रहे है लहरे आ रही है। दिन का टाइम --

तरफ एक गार्डन जैसा नजर आ रहा है जिसके ऊपर एक बड़ी सी छत्री लगी हुई है जिसका कलर रेड अँड व्हाइट है यहाँ पर बैठने के लिए कुछ चेअर्स लगी हुई है।

रोड बना हुआ है यहा पर ज्यादा क्राउड़ हो रहा है बहुत सारे ऑटो दिख रहे जो की येल्लो कलर के और हूड उनका ब्लॅक कलर का है धूप निकल रही है कुछ औरते नजर आ रही है।